बाहर साइड मे दीवार पर लिखा हुआ है कि गीले काजू व दाल की पिसाई भी की जाती है।

इस चित्र मे हमे एक अ म म स्टेशन का चित्र दिखाई दे रहा है जिसपे बहुत सारा समान रखा हुआ है।

आस पास पेड़ पौधे सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है यह एयरोप्लेन एक ग्राउंड में रखा हुआ है।

जिसके नीचे जवानों की चित्र बना हुआ है।

चित्र मे हमे एक बहुत पुराना किला दिखाई दे रहा है जो की बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है इसके सामने--